एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे बहोत सारा पानी भरा हुआ है कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है और बहोत सारे पत्थर भी दिखाई दे रहे है।

रोड दिखाई दे रहा हैं और दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए भी

ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा हैं और कुछ मकान भी दिखाई दे रहा हैं नीचे जमीन भी दिखाई दे रही हैं।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

यहाँ पे गवरी भी दिखाई दे रही है और पूजा की थाली भी दिखाई--

टेबल भी दिखाई दे रही हैं जिसपे ब्लू कलर का कपड़ा लगा हुआ हैं कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं मैट भी दिखाई दे रही हैं स्टूल भी दिखाई दे रहा हैं।